गौतम बुद्ध की मूर्ति है बहोत बड़ी--

यह एक गार्डन प्लेस है और एक लड़का है जोकि खड़ा है बैग पकड़ के--

बाहर में पड़े हैं कई बैठे हुए हैं।